यह घर में अगल बगल में काफी सारी चेयरें लगी हुई है।

यह दवाई दुकान का काउंटर ब्लू और वाइट रंग में है।

काउंटर के ऊपर में हाफ हाफ शीशे लगे हुए हैं।

का अगल बगल में काफी सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

इसमें दो टेबुल और चेयर भी है और काफी सारे सामान भी है इस हार्डवेयर की दुकान में।

इस दुकान के गेट का कलर ग्रीन है।

यह एक शादी शूज है।

नीचे में एक ब्लू कलर का अह डब्बा है।

और ये बिल्डिंग के सामने काफी व्यक्ति बैठे हुए हैं कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

यह एक होटल है।

यह दुकान में काफी सारे बाजा भी दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स जिसे कहते हैं।

यह नदी के अगल बगल में भी काफी सारे नाव खड़े हैं।

जिसमें काफी सारे बच्चियां टेबल पर बैठी हुई है।

बहुत सारे ई पिलर भी दिख रहे हैं इसमें तार भी दिख रहे हैं।

इस घर का डिजाइन बहुत अच्छा है।

इधर एक बिना पलस्त्तर के घर है जिसमें ग्रिल लगा हुआ है।

उधर काफी सारे स्टूडेंट भी खड़े है।

और स्टूडेंट के बगल में हरे कलर के रूम है।

और फ्रिज में बहुत सारे सामान भी है।

यह बैंक के दीवाल में काफी सारे पोस्टर्स साटे गए हैं।

प्रिया बैंक के सामने एक व्यक्ति खड़े भी है।

यह एक स्टेड है। इसमें काफी सारे डेकोरेट किया गया है और इसमें काफी सारे आ आदमी दिख रहे हैं।

इसका दृश्य बहुत ही सुंदर है।

यह परोठे बहुत ही सुंदर हैं।

यहां दुकान में काफी सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक हॉल है जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

काफी सारे हेड फोन बुलटूथ ये सब भी रखे हुए है।

काफी सारे सामान भी नजर आ रहे हैं इस दुकान में।